वहाँ पर पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ सामने मुझे एक एक बड़ा शोरूम दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर काफी सारी मरी हुई मछलियाँ रखी हुई हैं।

जो सामने कार दिखाई दे रही है। वो एक येलो कलर की है और एक व्हाइट कलर की है।

वह कुछ न कुछ काम में लगे हुए हैं।

और कुवे के आस-पास कचरा भी बहुत सा है और --

साइड में रेड कलर के गुब्बारे और बीच में येलो गुब्बारे हैं।

किले के उप्पर अ-अ पौधे उग्गे हुएँ हैं।

झोपड़ियो को बास की लकडियो से बनाया गया है।

गेट के बाहर अअ कुछ अ पत्थर से पड़े हुए हैं और --

यहाँ पर एक टीचर खडी हुई है।

सर्विस के इस सेंटर के सबसे ऊपर ओप्पो सर्विस सेंटर लिखा हुआ है।

डेकोरेशन में बड़े ही सुन्दर सुन्दर लाइट्स लगायी गयी हैं।